डंडे के ऊपर लाल रंग का झंडा लगा हुआ है।

लाल पन्नी पे बहुत सारी छोटी मछलियां रखी हुई हैं।

इसका इंजन लाल है पीछे तीन डिब्बे लगे हुए हैं।